और उसी के बैक साइड में कुछ पेड़ पौधे भी है और एक ऑटो स्टैंड का बोर्ड बना हुआ है।

तीन पेड़ बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं और नीचे काफी सारी हरियाली अवेलेबल हैं ।

सामने एक पूल दिखाई दे रहा है जोकी छः स्तम्भ पर खड़ा दिखाई दे रहा हैं पूल के ऊपर से एक गाड़ी बाइक कार जाती दिखाई दे रही है।

सामने तालाब बना हुआ है काफी अच्छा जिसमें काफी सारे अलग-अलग रंग के नाँव दिखाई दे रहे हैं।

और सामने जो ए_टी_एम है उसके नीचे काफी सारी रेलिंग स्लिप बने हुए हैं सामने--

जो भी मूर्ति है सभी वह सभी पत्थर से बने हुए देखने के लिए मिल रहे हैं ।